ये एक जिम है जिसमें एक आदमी खड़ा जिम करता दिखाई दे रहा है।

डलिया पर सब्जी रखा हुआ है एक आदमी उकड़ू बैठा है।

सामने पलस्तर उखड़ा हुआ है पूरा।

बाहर की तरफ रोड है पेड़ खजूर के दो लगे दिख रहे हैं।

लाइन से बहोत सारे खजूर के पेड़ हैं।

सामने एक छोटी बच्ची फोन चलाती दिखाई दे रही है।

एक आदमी ने क्रिचन का लॉकेट पहना है।

एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है।

ये एक मॉल है इसकी सीढ़ियां लिफ्ट दिखाई दे रही हैं।

सामने की तरफ खिड़कियों से अंदर पेड़ लगे दिखाई दे रहे है।

उपर की तरफ केले लटके दिखाई दे रहे हैं।

आस पास बहोत सारे पेड़ भी लगे हैं।

सामने बहोत बड़ा सा बैंक है बैंक ऑफ़ बड़ोदा जोकि बंद है।

ये एक बोलिंग ऑलवे है।

साइड में बॉल रखने वाला डिब्बा है।

लाइटें लगी दिखाई दे रही है।

जमीन पर घास लग उगी है।

गमले दिखाई दे रहे हैं।